वहाँ के स्नैक्स बहोत अच्छे हैं।

चल बुक सेलर के दुकान पे चलना है मुझे यार बुक चाहिए थी।

हाँ है तो डबल रोटी।

यार ये ब्रिज तो मेरे ख्याल से ट्रेन का ब्रिज है।

हाँ ये मुझे मतलब अच्छा लगा देख बड़े-बड़े रिंग बना रखे हैं इनमें से जाके खुदो वो देख सामने बत्तक का मुंह है बत्तक के मुंह में स्लाइड बना रखी है यार बहुत अलग --